तस्वीर में मुझे एक रूम दिखाई दे रही है जो कि बहुत सुंदर से डेकोरेट करके है यहां में कुछ क्रिसमस का प्रोग्राम हो रहा है।

इसमें एक विप ढाबा लिख के वो रेस्टोरेंट में--

इसके सामने में मुझे एक ब्लू कलर का गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम दिखाई दे रही है जो की रेस्टोरेंट है।

इसका कोना कोना में लोहा से सुंदर से सजा के है ऊपर पर का जो पूरा लोहा से सुंदर से--

इस तस्वीर में मुझे एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रही है।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

येलो और ब्लैक कलर से सजा के हैं उसका गला में बहोत सारा माला--

एक बिल्डिंग जो की रेस्टोरेंट है उसका मोन्ची नाम का एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मम मुझे एक रूम दिखाई दे रही हैं जोकि व्हाइट कलर में--

में जो स्टेज है उसको ब्लू कलर और रेड कलर कर्टेन से सजा के हैं और खिड़की--

इसमें मुझे एक शाम का नजारा दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं जो की वाइट कलर से लगाया हुआ है।

इसका अंदर में मुझे एक टेबल भी दिखाई दे रही है जो की ब्लू कलर कपड़ा से कवर --

का नीचे में मुझे एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

और नीचे में एक छोटा सा घर है उसका साइड में ट्रक लो--

इस तस्वीर में मुझे एक रूम दिखाई दे रही है जो की क्लासरूम है।

यहां में मुझे डिफरेंट कलर्स ऑफ जर्सी लोग भी दिखाई दे रही है और डिफरेंट कलर्स ऑफ फुटबॉल शो --

यहां नीचे में मुझे ग्रीन कलर और ब्राउन कलर का चेयर भी दिखाई दे रहा है उसका सामने एक कार्टून --

जो कि डिफरेंट कलर्स में है उसका नीचे में मुझे तीन कार दिखाई दे रहे हैं।

जहां में मुझे बहोत सारा चीजे जो इलेक्ट्रिक में यूज़ होते है वो दिखाई दे रहे हैं जैसे फैन --

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा रूम दिखाई दे रही है जिसका अंदर में मुझे एक छोटा सा बेड दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर में कवर करके--

ऊपर में रेड कलर का कुछ चीज भी है उसका नीचे में एक छोटा सा रेड कलर का मुझे हेयर ऑयल और क्रीम दिखाई दे--